यहाँ पर बहोत सारी ड्रिंक्स बाहोत सारे स्नैक्स हैं।

ये एक बस है बस के बाहर बस के ऊपर बहुत सारे आदमी हैं।

घर के बाहर एक कार भी है।

है सभी खड़े हुए हैं बस एक बैठा हुआ है यहां पर एक घड़ी भी है फैन है।

लड़कियां योगा कर रही हैं सभी लड़कियां बैठी हुई है सभी लड़कियों का--

यहां पर बहुत सारे चीजें हैं मुझे क्लियरली तो नहीं दिख रहा है लेकिन ऐसा लगता है।

बहोत सारी पहाड़ है यहां पर बहोत सारे नुकीले चीजे भी मौजूद है।

ये व्हाईट करे हुए है यहां पे दो--

यहां पर एक बहोत बड़ा घर भी मौजूद है इस सब के बीच में हमारे देश का एक तिरंगा भी मौजूद है।

जिम बहोत ही सुंदर है यहां पर बहोत सारे एक्सरसाइज के चीजें है।

और कोई कोई खड़ा भी है बहुत सुंदर दिख रहे हैं सब कुछ आगे बहुत सुंदर दिख रहा है बहुत सुंदर डेकोरेशन किया गया है।

लेकिन इतना साफ साफ दिख नहीं रहा है कि में देख सकूं कौन कौन सी गाड़ियां हैं यहाँ पे पेड़ भी मौजूद है।

पेड़ का कलर ग्रीन नहीं है शायद ग्रीन थोड़ा-थोड़ा है लेकिन दिख नहीं रहा है ऐसे की जैसे बहोत सुंदर दिख रहा है ये फोटो --

ये एक दुकान है दुकान में बहोत सारी चीजे हैं जैसे की ड्रेसेस साड़ी भी मौजूद है। बहोत सुंदर दिख रहा है सब कुछ।

यहां पर बहुत सारे हिरण हैं और--

यहां पर एक व्यक्ति इटली वडा बाहर कर रहा है बहोत ही सुंदर दिख रहा है ये फोटो --

अलग अलग ब्रांड की शर्ट पहने हुए है अलग अलग ब्रांड की पेंट भी पहने हुए है।

यहां पर बहोत सारी कुर्सियां है एक टेबल भी है यहां पर एक लैपटॉप है बहोत ही सुंदर दिख रहा ये फोटो ।

बहोत सारे लाइट्स भी यहां पे हैं यहां पर कांच की दीवार है।

बहुत सुंदर दिख रहे हैं सब लोग बहुत सुंदर दिख रहा है लाइटी --

बट मैं क्लियरली नहीं जानती कि ये क्या है।

यम्मी यम्मी चीजे हैं यहां पर बहोत सारी दुकाठी बहोत सारे खाने पीने की चीजे--

यहां पर बहोत सारी मछलियां हैं ऐसा लगता है की ये कोई रिजॉर्ट है लेकिन बहोत सुंदर दिख रहा है।

यहां पर बहुत सारे पेड़ हैं यहां पर दो घर भी है यहां पर एक बो--

बड़ा नदी भी है बहोत ही सुंदर दिख रहा है यह फोटो यहां पर बहुत बड़े बड़े पेड़ है।

कैफे का नाम है द सिटी कैफे बहोत ही सुंदर दिख रहा है फोटो सभी अलग-अलग जगह पे खड़े हुए हैं सभी ने अलग-अलग स्टाइल की हुई है।

ऐसा लगता है कि ये कोई हॉस्पिटल है बहुत ही सुंदर दिख रहा है सब साफ साफ दिख रहा है।

ऐसा लगता है कि ये सभी लोग गणपति बप्पा की दर्शन करने आए हैं बहोत ही सुंदर दिख रहे हैं गणपति बप्पा।

अ उनका फेस क्लीयरली नहीं दिख रहा लेकिन वो बैठी हुई है ये दिख रहा है।